एक नदी दिखाई दे रही है नदी में दो नाव दिखाई दे रहे हैं।

लाल दिखाई दे रही है एक मंदिर छोटा-सा दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं रोड दिखाई दे रही है।

टावर की परछाई पानी मे दिख रही है कुछ मिट्टी दिख रही है।

एक प्लेग्राउंड है प्ले ग्राउंड के पास एक मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति के ऊपर एक गाड़ी दिखाई दे रही है फ्लोर पे एक ऑटो रिक्शा---